यहां पर बहोत सारी शेल्फ दिखाई दे रही है।

बहुत सी खिड़कियां दिखाई दे रही है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

यहां पर एक ज्वैलरी की शॉप दिखाई दे रही है।

कुछ बदल भी दिखाई दे रहे हैं और एक जोड़ दिखाइ दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है और एक --

ग्रिल दिखाई दे रही है और रोड दिख रहा है।

कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

जहां पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई--

दे रही है बैनर्स लगे हुए हैं।

और कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ मैदान दिखाई दे रहा है।

बैनर्स में लाल जी ज्वेलर्स लिखा हुआ--

और कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ खिड़कीयां दिखाई दे रही है टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ बेड भी दिखाई दे रहे हैं।